और नीचे पहियन भी है और पीछे टंटी भी रखी हुई है वहाँ पे त जादे ऊपर

यह शॉप है यहाँ बहुत बड़ी शॉप है और यहाँ पे ए.टी.एम. और अच्छा भी है लेटा भी हुआ है तने हुए हैं।

बहुत सारे गोभी हैं यहाँ पे आने-जाने के लिए लच्छा भी है रोड वो पेड़-पोधे मस्त है| पानी भरा हुआ है। साईड में बहुत बड़ा--